लाल है और ऊपर छत लाल कलर की है जिसमें नीले हरे और पीले कलर से--

लाइट लगी है और साइड पे कुर्सी है।

के बाहर एक गोल बना है जिसपे--

में इधर एक सोफा दिख रहा है जो लकड़ी का है जिसपे सफेद--

दिखाई दे रहे हैं और उसमें ऊपर माइक लगा हुआ हे।

रंगीन कलर का दिख रहा है ऊपर नीला आसमान--

कलर दिखाई दे रहा है और ऊपर--

पाइप लगे हुए हैं खंबे बने हैं वो भी पूरा ब्लैक एंड वाइट --

टेबिल दिख रही है जिस जो नीचे सफेद कलर की है ऊपर इसके बहोत सारे लंबे--

नीचे कांच लगा है जिसके अंदर--

पिंक कलर का है ऊपर छत बनी है जिसके ऊपर--

ये जिसमें अंदर काला बोर्ड लगा है और एक साइड में छोटा पेड़ है।

इधर सामने सड़क है जिसके उस साइड कुछ पेड़ ही दिख रहे हैं।

और बिल्डिंग दिख रही है जो लाल कलर की है। ऊपर काला --

दो नाव है एक में दो आदमी बैठे हुए है।

ये एक ऑरेंज फूल सफेद पिंक लाल फूल की--

लगे हुए हैं। दोनों साइड दो वो मोर के गमले रखे हुए हैं जो सफेद गोल्ड --

बहुत सारे रैक बने हुए हैं जिनमें बहुत स--

तरी है जो हरे कलर की है और ऊपर पत्थरों के डिजाइन बनी हुई है जिस पर--

पौधे लगे हुए हैं सामने कैट बना है जिसके ऊपर--

इधर सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो--

इधर सामने सड़क दिख रही है जिस पर एक कचरे गाड़ी--

बच्चे हैं सामने एक मंदिर है।

कुछ चित्र छपे हुए हैं और नीचे गेट में भी--